सामने एक पंडाल दिखाई दे रहा है पंडाल के अंदर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है जो की बहोत ही विशाल और बड़ी मूर्ति है।

भगवान रखे हुए गणेश जी ज उनके सामने नारियल रखे हुए गणेश जी के ऊपर--

सामने एक हार्डवेयर की दुकान दिखाई दे रही है हार्डवेयर की दुकान डबल शटर की है उसमें एक तरफ बहोत सारे--

टीन का सेट लगा हुआ ऊपर बाउंड्री दिखाई दे रही है नीचे--

उसमें कांच लगे हुए हैं नीचे खिड़कियां दिखाई दे रही है खिड़कियां के बाहर कैरट लगी हुई स्टील की--